उसके पीछे बहोत बड़ा कुछ पोस्टर लगा गया है पीछे में ब्लू लाइट ग्रीन कलर का लाइट है।

ऊपर में ब्लैक कलर का बहोत सारा पंख लगा हुआ है स्टील का कुर्सी है।

एक दो मंजिला घर नजर आ रहा है जहां पे नेल शिक्षा कुछ लिखा हुआ है नीचे बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे है।

बड़े बॉडी बिल्डर्स नजर आ रहे हैं।

खूबसूरत पार्क जैसा डिजाइन लग रहा है।